फैमिली मार्ट या बिग बाजार जो भी है उसी का ये बनाया हुआ सेटअप है।

चॉकलेट्स रखी हुई हैं बिस्किट्स रखे हुए हैं।

यह झूले वूले लगाए गए हैं और ये स्लाइडिंग का है बच्चे ऊपर से फिसल के नीचे आते हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक बगल में यहां पे बिल्डिंग बनी हुई है जिसका रेड कलर से पेंट हुआ है।

यह एक ग्लोसरी स्टोर है।

ये एक केबिन बनी हुई है।

कुर्सी टेबल अलग से भी रखे गए--

ये कोई ज्वेलरी शॉप लग रही है यहां पे क्योंकि कांच के अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं क्लियर दिख नहीं रहा है।

और ये बाहर के जो गमले रखे हुए हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं कुर्सी है वैसे जहां तक मुझे लग रहा है ये खाने की दुकान है।

और एल्यूमीनियम के दरवाजे लगे हुए हैं।

दो जगह इसमें स्विच बोर्ड तीन जगह दिए हुए हैं।

स्कूल का इवेंट है यहां पे तीन टीचर्स हैं बच्चे हैं।